यह एक जिम की फोटो है।

चारों तरफ यहां का जो ऊपर का जो छत है जो मौसम दिखाई दे रहा है नीली ब्ल्यू सी कलर में।

और दो तीन मंजिल है ये--

ग्रीन कलर का बैलून है यहां पर।

लेवर में है और वो जो है ऊपर जो--

ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा है मिट्टी है नीचे घास फूस है।

ये है जो हमें ढोलक सी दिखाई दे रही है।

और ये है कुछ आदमी पीछे खड़े हुए हैं।

जो काउंटर के अंदर जो सर खड़े हुए हैं वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

और यहां पर लोहे का जो है गेट लगा हुआ है बाहर गमले लगे हुए हैं इस--

और यहाँ पर जो है मतलब कुछ आदमी खा रहे हैं और कुछ यहाँ पर खाना खिलाने वाले हैं।

यह एक स्कूल का दृश्य है जिसका कलर पीले रंग का है और रेड --

और कुछ बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं।

और बराबर में जो है एक दुकान है जिसका आधा गेट खुला हुआ है शटर --

और लाइट जो है वो बलती हुई दिखाई दे रही है।